बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

वअन स्टॉप ग्रोसरी शॉप लिखा हुआ है।

बीच में एक लोहे का गेट है।

एक आदमी कमबल ओढ़ के बैठा हुआ है।

सामने एक और बिल्डिंग है। बिल्डिंग पर येलो कलर का पेंट नज़र आ रहा है।

ब्रिज पर सीड़िया बनी हुई है।

दुकान में तरह-तरह के गुलदस्ते रक्खे हुए हैं।

साइड मे एक लाइट लगी हुई है। ऊपर आसमान नज़र आ रहा है।

ऊपर थोड़ा आसमान भी नज़र आ रहा है।

शोरूम के बाहार भी बोहोत सारे कपडे लगे हुए हैं।

एक बैनर पर स्टार स्पोर्ट्स रेडीमेड सेण्टर लिखा हुआ है।